ये बैंक ऑफ़ बड़ौदा है। के.जी.एन. से है जन सेवा केंद्र है ये।

डांसिंग क्लास का रूम है। यहाँ पर लोग डांस करते हैं।

में बाल्टी रखी हुई हैं। इसमें भरें सामान और बाहर को ले आयें। जितना सामान होता है उतने पैसे काट जाते हैं आपके।

ये जो है ये मालिश करा रहे हैं अपने शरीर की बेड पे लेट कर।

ये एक चाय की दुकान है।

इससे काफी मजा आ रहा होगा। फ़ोटो भी खींच रहा है शायद ये।

ये बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में ज्यादातर बैंक देखने को मिलती हैं।

अपने घर लाते हैं। उन्हें पकाते हैं। उन्हें खाते हैं।